जो हाथ पे पेन पकड़ा हुआ है।

बहोत सारे पेन रखे हुए है।

एक पानी की बोतल रखी हुई--

यह एक बहुत ही बड़ा कपड़ों का दुकान है यहां पे सारे स्टाफ्स बैठे हुए है।

बहुत सारे लाइटें लगे हुए है बैलूनों से सजे हुए है एक ऐ_सी लगा हुआ है।

यहां पे एक रेड कलर का घर है।

यह एक मोबाइल की शॉप है यहां पे बहुत सारे--

साइड पे पेड़-पौधे बने हुए हैं उसके साइड पे एक गुलाब का फू --

उसके ऊपर आलमारी बनी हुई हैं।

एक मूर्ति येलो कलर की कुर्ती--

यह एक बगीचा है यहां पे नीला कलर का फूल है।